अंधेरा है और ऊपर में और लाएट भी जली लगी हुई है रात का सीन है ये स्पीकर भी लगा हुआ है ये मह --

और बहुत मस्त लगती है देखने में और यह भी अति सुंदर लग रही है।

यानी साठ रुपया में आपको हर चीज मिल जाएगा।

यहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है --

यहाँ पे आदमी भी खड़ा हुआ है और देख के बहुत सुंदर लग रहा है।

इधर बहुत बाढ़ आया है बाट से पुरान पीड़ित है --

और अति सुंदर ही सुंदर दिखाई देती है और बहुत अच --

अ बहुत मस्त ही मस्त लग रहा है देखने में भाई।

दाल बटाई हुई है बहुत मस्त लगती है देखने में --

और यहाँ पे कोटी भी बहुत अच्छे से बनाई गई है --

यहाँ पे कोच है ये कोच दो-दो-दो तीन-तीन कोच है यहाँ पे --

ये क्या सीन है भाई टाइल पत्थर भी लगी हुई है अच्छी तरह से।

काम भी चल रही है यहां पे हरी-भरी भी दिखाई दे रही है।

और देखने में बहुत सुंदर-सुंदर दिखता है और बहुत नजारा है --

और ऑटो के ऊपर जो है प्लास्टिक दी हुई है --

और यहाँ पे घर भी बहुत अच्छी-अच्छी बनी हुई है यहाँ हर एक आदमी का।

और यहाँ पे भी लगे हैं पब्लिक सब है जो और यहाँ पे --

जो की यहाँ पे चस्मा भी पहने हुए है।

और हरे भरे भी दिखाई देते हैं --

निचे में तीन महिलाएं एक है और यहाँ पे पानी झरना की और निचे आ रही है।

और यहाँ पे जो है बाइक लगाई हुई है --

और बहुत मस्त लगती है देख के अतिसुंदर है सुंदर है।

और देखने में बहुत मस्त-मस्त लग रहा है --